और घर में बहुत सारे झंडे लगाए हुए हैं और घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है और पेड़ भी दिखाई--

यह एक बुक स्टोर है और यहां पे बहुत सारे बुक रखे हुए हैं।

पिलर भी दिखाई दे रहे हैं जो की वाइट कलर का है बगल में लाइट लगाया हुआ है ऊपर से तार खींचा गया है।

यह एक कराटा एकेडमी है और इसमें बहुत सारे लोग कराटे कर रहे हैं।

बॉक्स से रौशनी आ रहा है बॉक्स में स्टीकर लगाए हुए हैं।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

और बिल्डिंग में झालर लटकाया गया है और खिड़कियां भी दिखाई दे रही है और शीशा लगाया गया है।

सामने सीसा भी लगाया हुआ है और बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग रंग के हैं।

और दुकान के बाहर एक पोस्टर लगाया हुआ है और दुकान में बहुत सारे सामान रखे हुए है।